जैसा की मै देख पा रही हु यहाँ रोड है यहाँ पर बहुत सारी बस और कार बाइक है और यहाँ पर ई रिक्शा भी है और यहाँ पर --

पेड़ भी लगे हुए है पानी जो है वो क वो बैगनी और आसमानी मै दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बाह बदल जो है वाइट --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

जैसा की मै देख पा रही हूँ ये एक रोड है रोड के किनारे बाउंड्री खींची हुई है जो की सफ़ेद रंग की हैं और यहाँ पे बहोत सारे खंम्भे भी लगे हुए है पीले और यहाँ पे--

तार भी है घर भी बना हुआ है सौ दुकान भी है यहाँ पे लोग भी है हरी-हरी घास भी है हरे-हरे रंग के पेड़े भी लगे है खम्भा भी है जो की तार --

जैसा की मै देख पा रही हु यहाँ पर एक स्टेडिओ है जिसमे जो की दिवाल उसकी पीले रंग की है और यहाँ पर एक भूरे रंग का--

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पे मानसरोवर स्टैनरी लिखा हुआ है जो की नीले रंग का एक शटर है यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है एक --

यहाँ पर स्टील के जीने बने हुए है सफ़ेद रंग के और यहाँ पर एक पर्दा भी लगा हुआ है लाल और भूरे --

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पर एक चर्च है यहाँ पर लाइटे भी लगी है यहाँ पर बेलून भी लगे हुए है भूरे नीले और--

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पे एक बोर्ड लिखा बना हुआ है जिसमे केंद्री समझ आ रहा है और यहाँ पर दो --

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसमे टाइल्स लगे हुए है जमीन मे जो की सब किरीम और भूरे रंग मे यह दिवाले जो हैं वो--

घर मे यहाँ पर हरे-हरे रंग के पेड़ भी है और एक खम्भा भी है जिसमे तारे भी लगे हुई है जमीन का जो रंग है वो सफ़ेद क्रीम मे--

बड़े से ओढ़ाया गया हुआ है और मै बहुत सारी प्लेटे रखी हुई है यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियां भी जो की भूरे रंग की है और लाइट भी लगी है।

जैसा की मै देख पा रही हु यहाँ पर एक मस्जिद है और यहाँ पे ब जो कि रंग-बिरंगी कलरो से डिज़ाइन की गई है जैसे हरे गुलाबी--

जैसा की मै देख पा रही हु ये एक जिम है जिम में का जो छत है वो सफ़ेद रंग की है यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का पंखा और लाइटें भी और यहाँ पर एक--

और यहाँ झालरे मे और यहाँ पे एक अंकल हैं जो की लाल रंग की शर्ट और सप काले रंग की पैंट पहनी हैं और गमछा भी बांधे हुए है हरे-हरे रंग के पेड़ भी लगे--

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पर ई रिक्शा जो की लाल और पिले रंग का है यहाँ पे एक अंकल सफ़ेद रंग के कपडे पहने हुए है ऊपर एक पोस्टर भी --

झंडा लगा हुआ है जो की ओरेंज सफ़ेद और हरे रंग का और यहाँ पर जो आसमान है नील सफ़ेद रंग का। एक यहाँ मरकरी लगी हुई है। खंबा--